यह एक इस स्कूल है । स्कूल के बगल में एक मंदिल भी है जो देखने में काफी अच्छे है।

और डी.जे. के साथ में बहुत सारे आदमी भी है। यहाँ डी_जे बज रहा है। आदमी नृत्य कर रहे हैं।

बाहर एक गे लगा हुआ है । वह गे देखने में बहुत अच्छा है ।

यह सदर अस्पताल है। यह सदर अस्पताल गोपालगंज में है। यहां बहुत सारा भीड़ --